और कुछ लोग खड़े हैं यह आदमी उन सब लोगों से बात कर रहा है।

इसमें एक भवन दिखाई दे रहा है जिसमें शासकीय माध्यमिक शाला--

बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं-कहीं मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं समतल जमीन है फिर तालाब है कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

दिखाई दे रही है और इन इनमें बहुत सारे खंड बने हुए हैं सभी खंडों में अलग-अलग विभाग--

मे सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं सड़क के दूसरे किनारे पर एक--

पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई दिख रही है।

मस्जिद का मुख्य द्वार खुला हुआ है मस्जिद के सामने सड़क है सड़क पर एक माल वाहक खड़ा है कुछ स्कूटी --

कागज चिपका हुआ हैं जिसमें कुछ लिखा है और एक बोर्ड लगा हुआ है उम्म--

पुरे गार्डन में बहोत सारी लाइट लगी हुई है कुर्सी-टेबल लगे हुए है रंग-बिरंगे लाइटे लगी हुई है।

अ स्टेचू साड़ी पहन कर खड़े हैं कुछ पेंट शर्ट पहन कर खड़े है।

इसमें कुछ क्रीम के पाउच लटके दिख रखे है दुकान के सामने कुछ शैम्पू के कुछ नमकीन के --

बोर्ड लगा हुआ है जिस पर फ़ेडरल ए_टी_एम लिखा हुआ है इसमें लकड़ वो काँच का दरवाजा लगा हुआ है।